ये एक वॉशरूम लग रहा है।

वॉशरूम में टॉयलेट सीट है।

जहां पर अलग-अलग टेबल्स लगे है।

मेहरून कलर की एक कार साइड में खड़ी है।

और ऊपर से एक तार जा रही--